इन ट्रकों पर ए_पी_एस_आर_टी_सी लिखा गया है।

यह एक पेट्रोल टंकी का सीन है।

उसके बगल में एक ई रिक्शा है।

ऊपर में बिजली के वायर दिख रहे है।

गेट के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है।

सड़क पर एक व्यक्ति उनके सामने खड़ा है और एक बोलेरो भी सामने खड़ी है घर में एक--

टेबल पे पानी की बोतलें है ढेर सारे गुब्बारे दिख रहे है सजाए हुए --

यह एक मार्बल की शॉप है।

अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

चार पांच गड्ढे खुदे हुए दिख रहे हैं एक लाल टी शर्ट पहने व्यक्ति इसमें खड़ा है।

यह घर का फोटो है।

ट्रेन रेड कलर से प्रिंटेड है ट्रेन का गेट खुला हुआ है।

इसमें ढेर सारी कुर्सियां रखी गई हैं।

बैक कवर भी है मोबाइल के इसमें डाटा केबल्स --